एसप्रेस में एक छोटा सा पेट्रोल पंप है।

पोस्टर में बहोत सारी चीजे लिखी हुई है।

बगल में एक सीढ़ी गया है।

सीलिंग का रंग सफेद है।

अंदर एक पंखा लटका हुआ है।

इस फोटो में एक छोटा सा कमरा है।

एक मसीन भी है।

इस फोटो में एक बड़ा सा घर है।

घर का रंग गुलाबी है।

एक दो पहिया वाहन भी है।

पीछे एक टेबल रखा हुआ है।

और बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ हैं।

इसके सर में कुछ ऑरेंज कलर के लगे हुए हैं।

सामने एक दुकान है।

ऊपर एक बड़ा सा लाइट बल्ब जल रहा हैं।

एक आदमी है जो कि एक बाइक पर है।

आसपास ढेर सारी बाइके के लगी हुई है।

इस फोटो में एक कमरा है।

अंदर की दीवाल का रंग भूरा है।

बहुत सारा लाइट जल रहा है।

पोस्टर काले रंग का है।

बगल में एक छोटा सा बच्चा है।

इस फोटो में ढेर सारी गाड़ियां लगी हुई है।

एक बड़ा सा लाइट का खंभा लगा हुआ है।

सामने से शीशा लगा हुआ है।

आसपास ढेर सारी गिट्टी रखी हुई है।

दीवाल का रंग सफेद है।

बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं।